है जिसमें बैलून से डेकोरेट कर रखा है।

पानी इसके साइड में है और यहां एक येलो टी शर्ट में--

यह एक कंप्यूटर लैब है यहां टेबल भी हैं और यहां बहुत सारे कंप्यूटर भी हैं।

यह है एक जिम दिखाई दे रही है जिस--

पानी बह रहा है और यहां एक नाव भी दिखाई दे रही है।

वाइट कलर का एक घर भी है जिसमें ए_सी लग रहा है।

आसमान है और लाइट भी है।

पिंक कलर की यह घर भी हैं तारों का खंबा भी हैं।

नीचे इट बिछी हुई है आसमान भी है।

डेकोरेशन हो रही है टाइल लगा रही है।

इसमें कुर्सी भी रखी हुई है।

साइड में हरे पेड़ पौधे हैं और यहां कच्चा मैदान है।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

और यहां पर बोर्ड लग रखे हैं यह महादेव मोटर्स वालों की है।